ये जिम का दृश्य है और इसमें एक आदमी--

और आदमी के टी-शर्ट का कलर है ब्लू और पैंट का कलर है ब्लैक --

इस फोटो में एस_बी_आई के किसी ब्रांच का दिखाया गया है दृश्य।

बहुत सारा बच्चा लोग डांस भी कर रहा है पीछे से टीचर सिखा रहा है और --

इसमें पांच औरत दिख रही है और जो कि वाइट कलर का साड़ी पानी है पीछे में कोई अ अ --

क्योंकि ऐसे बहुत सारे मैदान है इसमें बहुत सारे व्यक्ति हैं कुछ क्रिकेट खेल रहे हैं कुछ साइकिल पर है और पेड़-पौधे भी हैं अगल-बगल में।

एक बेंच ग्रीन कलर का है बहोत सारा बेंच एक तरह है और बहोत दो-तीन बेंच अलग तरह का भी है।